और यहां पे सभी तरह के लेडिस जेंट्स बैठे हैं।

जहां से आ रहा है और--

चारों तरफ सोफे रखे हैं और लाइट ब्राउन कलर के सोफे हैं।

यह एक फर्नीचर की दुकान लग रही है।

ये एक कार का गैरेज नजर आ रहा है जहां पर कार के रिपेयरिंग हो रही है।

और इसमें लाल कलर की एक बड़ी स्प्रिंग लगी है।

और एक सूरज हैं वो भी डूबने वाला है और सूरज की रोशनी पानी में नज़र आ रही है।

और यहां पे काफी सारी कुर्सियां लगी हैं जो कि कवर करी हुई हैं काफी डेकोरेट किया गया है और अभी--

तो हम इस पिक्चर मे ये देख रहे हैं कि यहां पर हमारे इंदौर की गलियां है यहां पर डीपियां लगी हुई हैं बहोत बड़ी--

जहां पर पॅ अ बर्ड एवायरी होता है पंछियों की जगह होती है वहां पर हमने देखा है एक पिंजरे के अंदर दो तोते हैं।

और राइट साइड जो आपको दूर दूर टेबल दिख रही है वो सब खाने की टेबले है। यहां पे खाना खाया जाता--

यहां पे बच नाव वी आर सिइंग ए मोबाइल शॉप ये एक मोबाइल की दुकान है जहां पर ये एसेसरीज मिलती है नॉर्मली से ये कहीं भी नहीं मिलती आप इसमें देख रहे हैं ये --

पिन अह एक्सेक्टरा बहुत सारी चीजें हैं बैटरी के सेल्स --

इस तस्वीर मे हमे ये देख रहे है कि दो तोते है दो--

यहां पर आपको कित मछलियों की दुकान मिल जायेगी उनका खाना मिल जायेगा।

साफ सफाई का सामान है बरतन माजने का कुंचा है घर साफ करने का पोछा है लाइटर है चम्मच है झाड़ू है।

हरे हरे पेड़ पौधे हैं ऊपर से पानी आ रहा है और पत्थरों से टकराता हुआ पानी हैं ये।